दो मंजिला इमारत मे ऊपर की तरफ एक ऐड्वर्टाइज़्मन्ट की करते हुवे अपनी दुकान का एक बोर्ड लगा हुवा है नीचे की तरफ नीले रंग की शटर है और एक बड़ा सा गेट है जिस से अंदर जाने का रास्ता है।

यह तस्वीर कन्स्ट्रक्शन साइड की है जिसके साइड मे पानी के बोटले बिक रही है ताके उसमे जो भी पानी की जरूरत पड़े वो पानी फेक कर पी सकता है।

शाम से बांद की एक तस्वीर है जहा पर अभी पानी नहीं छोड़ा गया है इसलिए पानी बड़ा स्थिर है और आस पास भी बहुत ही शांति बनी हुई है।

इसमें एक बड़ी सी नदी दिखाई गई है नदी के ऊपर एक पूल बना हुआ है। पूल ये--

अलग-अलग स्टेशन्स बने हुए है और पंप डालने के लिए हवा डालने के लिए भी इंतज़ाम किया गया है और ह्य्द्रौलिक मशीन भी है ऊपर से प्रकाश का भी पूरा इंतज़ाम किया गया है जो की के थ्रू आ रहा है लाल रंग की मशीने यहाँ पर रखी हुई है।

कई एक लंबा सा ब्रिज है जिस के नीचे एक बड़ी सी नदी बह रही है।

जिसमे पीले रंग के फूल हरे रंग की झड़ियों की बीच मे लगाई गई है एक बड़ा सा गेट लगाया गया है जहा पर रोशनी का और लाइट का बहुत अच्छा उपयोग किया गया है साथ एक हवा मे पंखा भी लटका हुआ है लगा हुआ है जिसे फैन कहते है।

तस्वीर में एक चर्च की तस्वीर दी गयी है जोकि लाल रंग का है और पीछे की तरफ़ बड़े-बड़े पेड़ है जो हरे रंग के हैसाथ में सड़क के किनारे एक साइन बोर्ड़ भी लिखा-बद दिया हुआ है जिससे ये पता चलता हैकी आगे एक स्कूल भी है।

ये नर्सरी की तस्वीर है जिसमे की सन रूफ लगा करके ग्रीन कलर की बांस के सरे रोकी गई है न-नीचे की तरफ काफी पौधे लगे हुए हैं।

साथ मे अपनी फॅमिली के साथ मनोरंजन करने के लिए उस ढाल के सहारे पानी तक जा करके किनारे को छु करके पानी का आनंद ले रहे हे।